बाहर में मौसम जो बादल सफेद रंग में भी नजर आ रहे हैं।

पिक्चर में एक आदमी दिखाई दे रहे हैं जो की बहुत बड़ा बड़ा पेड़ के नीचे में खड़े हैं और वह पत्थर को टच करते हुए छू रहे हैं जो कि उसके ऊपर बहुत से बड़ा पत्थर है।